दो लोग भी दिखाई दे रहे है पीछे एक छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा है दो बड़े बड़े खंबे है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।